यहां बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर एक घर के ऊपर कुछ कपड़े सूख रहे हैं और कुछ --

एक मीटर लगा हुआ है जिसके आर पार तारें बहोत ऊंची हुई दिखाई दे रही--

नदी के बीच में एक दीवार है जोकि वाइट कलर की है और एक पूल बना हुआ है जोकि बहुत सारे लोहे की पाइपों का बना हुआ है।

यह एक शॉप है जिसके अंदर बहोत सारे वेन गाड़ी की चटाइयां वगैरा और लटकी हुई है और एक कांच का काउंटर है जिसके अंदर कुछ --

यह एक बहुत बड़ी शॉप है जिसके अंदर कुछ टॉयलेट्स और वॉश बेसिन की सीटें रखी हुई है।

यह एक शॉप है इसके अंदर एक प्रिंटर मशीन रखी हुई है और पास में एक अलमारी में लकड़ी --

इसके अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और--

और आसपास में बहुत सारी फिसल पट्टियाँ लगी हुई हैं।

जो कि अभी बंद है चल नहीं रही है और कुछ पंखे चल रहे हैं और--

और इसके ऊपर रेड कलर में नाईस कैफे लिखा हुआ है और आसपास में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान साफ और नीला दिखाई दे र--

जिसके आगे मोर पंख लगे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं और आस-पास बहोत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ फोन चला रहे हैं गाने सुन रहे है।

आदमी पीछे से वीडियो बना रहा है इस पत्थर के अंदर से बीच में से कुछ काले काले रंग का तेल निकल रहा है।

बहुत सारे लाइटें जल रही है और दीवार में पीछे लगी हुई हैं और आसपास दीवार पर बहुत सारे पिक्चर्स टंगे हुए हैं और --

यहां कुछ फूल की माला टंगी हुई है।